सामने में दो दुकान दिखाई दे रहा है जिसका रंग नीला है।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

पीछे में बहोत सारा घास दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है और पत्थर दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बोरा बांधा हुआ है और नीले रंग का त्रिपाल।

एक में बहुत बढ़िया चित्रकारी किया गया हैं जो दूसरे साईड में रखा हुआ हैं और इधर में तीन रखा हुआ हैं ऐसा।

सब का रंग पीले कलर का है और कुछ पत्ता दिखाई दे रहा है जिनका रंग हरा है।

एक घर दिखाई दे रहा है जो खपड़ा का है जिसका रंग नीला है।

साइकल है जो लाल रंग का है सामने एक ग्रिल दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का

इस दृश्य में बहुत सारा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो उन्होंने अलग अलग रंगों का कपड़ा पहना हुआ है और कुछ कुछ ने टोपी पहना हुआ है।

ये सभी व्यक्ति कुर्सी में बैठे हुए हैं कुर्सी का रंग काला है।

रंग काला है उसपे खिड़की लगा हुआ है खिड़की में शीशा लगा हुआ है।

बगल में एक नदी दिखाई दे रहा है जिससे पानी है।

दीवाल पे कुछ मशीन लगाया हुआ है जिसमें से कुछ पाइप निकला हुआ है।

नीचे में कुछ डब्बा दिखाई दे रहा है जिसका रंग अलग अलग है।

बहोत सारा फूल बनाया है हुआ है जिसका रंग हरा और गुलाबी है।

बगल में एक अलमारी दिखाई दे रहा है जिसका रंग भूरा है।

बगल में दरवाजा दिख रहा है जिसका भूरा रंग है।

इस दृश्य में बहोत सारा कुर्सी दिखाई दे रहा है जो एक में लगाया हुआ है।

आधा का रंग काला और आधा का रंग भूरा है।

इधर एक पंखा दिखाई दे रहा है वो भी सफेद रंग का है।

पीछे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसका रंग पीला है उसमें बहुत सारा खिड़की है।

बगल में भी पीला कलर का झूला दिखाई दे रहा है।

अगल बगल में सजाया गया है फूल से जो दो रंगों में है सफेद और गुलाबी।

सामने में दो बोर्ड दिखाई दे रहा है एक लाल रंग का है एक नीले रंग का है।

सामने में एक पीला गेट है जो पीले रंग का है उसके बगल में भी एक है दीवाल नीले रंग का है।

अंदर मे बहोत बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का है उसमें खिड़की लगा है बहोत सारा और दरवाजा भी है।

इस दृश्य में सामने में दीवान पलंग का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसमें शीशा लगा हुआ है।

इस दृश्य में सामने बहोत सारा पत्थर दिखाई दे रहा है।

छत पे लाइट जल रहा है सफेद रंग का ऊपर में बढ़िया--

चित्रकारी दिखाया गया है उसके दीवाल पे बहोत सारा रस्सी लटका हुआ है अलग अलग रंग का।

इस दृश्य में सामने लकड़ी का बना हुआ छोटा छोटा अलमारी दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

जैकेट पहना हुआ है कमर में इंची टेप लगाया हुआ है।

ऊपर में भी चार दरवाजा दिखाई दे रहा है जो काला रंग का है।

सामने में गैस का टंकी है बगल में बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।